जिस पे आपके बनानास के पेङ हैं कोकोनट के पेड़ हैं एक हैंडपंप लगा है दो आदमी रुक कर कुछ देख रहें हैं।

हेल्लो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आपका एक मॉल ही बोहोत ही ज्यादा सुन्दर है इसको रेड एंड वाइट सी डेकोरेट किया गया है।

सीटीईटी एसईटी एंड अदृष मोबाइल नंबर भी लिखा हैं गोबरसही रोड पावर हाउस शॉप मारीपुर मज़फ़रपुर में ये लोकेटेड हैं।

हेल्लो फ्रेंड्स आप देख सकते है यहां पे किस मैगी का टेक्सचर है जिस--

हेलो फ्रेंड्स आप देख सकती हैं ये आपका एक प्लेग्राउंड लग रहा है जहाँ पे कुछ लड़के लोग प्ले खेल रहे हैं।

बोहत ही इंट्रेस्टेड लड़का बैग भी टांगा हुआ है प्याज भी दिख रहा है।

हेलो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल्स का है जो --

हेलो फ्रेंड्स यह आप देख सकते है यह आपका मुज्जफरपुर डेयरी है जिसका नाम है तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ।

सूट में एक आदमी हैपिंक शर्ट और वाइट जीन्स मैं उस के बगल में जॉकी लेदर का दीख रहा है--

हेलो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह कोई पार्किंग पार्क एरिया लग रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं फुटपाथ बनाया गया है ब्राउन कलर का इस साइड दोनों साइड फ्लावर्स है उसपे पेड़ हैं फ्लावर्स पे रेड कलर के फ्लावर्स हैं उधर एक छोटा आदमी दिख रहा है।

हेलो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह कोई सरकारी दफ्तर लग रही है।

फिरोजी कलर का इसमें एक वायर दिया हुआ है सामने यल्लो है।